यह चित्र एक जगह का नजर आ रहा है जहाँ पर नीचे की ओर संतरी रंग का फर्श बना हुआ नजर आ रहा हैं बैठने के लिए लोहे की कुर्सियाँ भी बनाई हुई हैं वह लोग लोहे की--

वह एक व्यक्ति उन्हे बेचते हुए नजर आ रहा है जिसने अपने मुँह पर मास्क लगाया हुआ है पीछे की ओर भी एक व्यक्ति खड़ा नजर आ रहा है वह एक व्यक्ति जाते नजर आ--

मूर्ति को रंग बिरंगी मालाओं से सजाया हुआ नज़र आ रहा है व ऊपर की ओर मुख पहनाया हुआ हैं कुछ महिलाएं नीचे बैठ कर पूजा करती हुई नजर आ रही है।